एक छतरी लगी है खंभे पे एक बाइक खड़ी है।

प्लेट के अंदर पनीर दाल रखी हुई है।

फोटो एक दुकान से बाहर से ली गई है जिस पर लिखा है खान हीरो होंडा सर्विस सेंटर ।